खम्भे दिख रहे हैं खम्भे पे दो ब्लब जलते हुए दिख रहे हैं गाड़ी पे बैठा हुआ जेंट्स दिख रहा है मकान में कलर --

ग्रीन कलर दिख रहा है | खेतों में पानी फैला हुआ दिख रहा है | लकड़ी दो तीन खेत दिख रहा है | पहाड़ टाइप का दिखा रहा है | खम्भे दिख रहे है एक लड़का दिख रहा है |

झंझरी दि दिख रही है पेड़े देख रहे हैं बाहर मकान में पिंक कलर पीला कलर दिख रहा है।

टावर दिख रहा है ऊपर झंडी लगी हुई दिख रही हैं मूर्तियाँ दिख रही हैं बहुत सारे खम्भे दिख --

झंडी लगी दिख रही है पिली ग्रीन कलर की केले दिख रहे --